और यहां हरे घर ही घास है।

आगे थोड़ा खाली मैदान है और ऊपर खीला हुआ मौसम है बादल नजर आ रहे हैं।